यहाँ एक मंदिर दिख रहा है जहाँ लोग जा रहे हैं। इसका दृश्य काफ़ी अच्छा है यहाँ पर काफ़ी पेड़-पौधे और हरीब-हरियाली दिख रही है।

यह दृश्य एक जंगल का है जहां पर एक जंगली मुर्गी भाग रही है यहाँ एक अच्छा दृश्य है जो यहाँ मुर्गियाँ --

बहोत अच्छा जगह है। मनेरी जगह में यहाँ पर विद्धुत का उत्पादन होता है ये काफी बड़ा और ज्यादा विद्धुत का उत्पादन होता है यहाँ पर।

यहाँ पर हमेशा चाँदनी दिखाई दे रही है और बहोत अच्छा लगता है। यह दृश्य आपको भी देखना चाहिए देहरादून जाकर।